यह एक रेडीमेड कपड़े की दुकान है। जिसमे बहोत सारे सेल्फ़ लगे हुए हैं। जिसमे साड़िया दुपट्टे कुर्ते --

सीमेंट के टाइल्स लगी हुई है। एक स्कूटी खड़ी हुई है। दो बाइक खड़ी हुई हैं।

इसमें बहोत सारी सब्जिया रखी हुई है आलू प्याज़ टमाटर लौकी।